और बहुत सारा डेकोरेशन है यहाँ पे बहुत सारी बाइक खड़ी है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे पिंक वाइट गुब्बारे लगे हुए हैं एक पोस्टर लगा हुआ है।

एक ब्लैक कलर मे कुछ टंगा हुआ है उसका पैंट दिखाई दे रहा है चोकोलेटी कलर में ब्रोच का ढक्कन दिखाई दे रहा है वाइट कलर दिखाई दे रहा है पुतले की आँख दिखाई दे रही है।

यहां पे एक जिम दिखाई दे रही है न्यू जिम खुली हुई है वहां पे लाइट दिखाई दे रही है।

ऊपर घड़ी दिखाई दे रही है झंडा दिखाई दे रहा है मकान दिखाई दे रहा है ए.सी. दिखाई दे रही है वाईट एन्ड ग्रीन एंड ओरेंज गुब्बारें दिखाई दे रहें हैं निचे जमीन दिखाई दे रही है निचे पट्टी दिखाई दे रही है यल्लो कलर में।

एक लेडिज खड़ी हुयी माईक पे बोल रही है धर साइड में विंडो दिखाइ दे रही है जिसका व्हाइट कलर है एक तस्वीर भी दिखाइ दे रही है टाईल्स भी दिखाइ दे रही है।